कमरे में एक महिला और उसकी दो बच्चियां योगा मैट पर योगा कर रही हैं। उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

सड़क के किनारे गुरुदवारा है जिसमें सफ़ेद रंग किया हुआ है| चारों तरफ लाईटें लगाई हुई हैं और बैठने के लिए व्यवस्था की हुई है।

सड़क के किनारे बहोत ही सुँदर लाल रंग के बॉर्डस और लाइनें बनाई हुई हैं और अंदर जाने के लिए बहोत ही सुँदर दरवाज़ा है।

लगाया हुआ है। दीवारों के चारों तरफ सफेद रंग का पैंट किया हुआ है।